सामने एक साईड पे बड़ा सा गार्डन है रोड बनी हुई है काले रंग की दो गाड़ी खड़ी है नीले और काले रंग की एक स्कूटी है।

सामने इस साइड पे एक झरना ज़र रहा है जो सफेद रंग के पेड़ पौध हरी पत्ती सफेद नीले आशमाने है और--

खम्बे गड़े हुए है जो पत्थर लगि हुई है जो कत्थई रंग के पानी भर हुआ है बगल मे पेड़ पौधे हरी पत्ती है कुछ हरी घास है।

ई टाट बिछी हुई है नीचे एक साइड पे भूरे रंग की काले रंग की टाइल्स है ऊपर के साईड पेड़ पौधे है हरी पत्तिया है।

सामने एक साइड पे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है ऊपर छत्री बनी हुई है सफेद रंग की लाइटे जाली हुई है पीले सफेद है छोटे-छोटे खंभे खड़े हुए है जो सफेद है।

सामने एक बड़ा सा पेड़ है जो कत्थई रंग के है सफेद नीले आसमान है और वहा पे एक पेड़ है जो हरी पत्ती है।

सामने साइड पे पेड़ लगि हुई है हरे रंग की पत्ती भूरे रंग की है।

पहाड़े है हरी पत्ती है सफेद नीले आशमाने है बगल मे नीचे साइड पे पेड़ पौधे हरी रंग की पत्ती है सफेद नीले आशमाने है कुछ कत्थई रंग की है सफेद रंग की है।

साइड पे बड़ा सा मंदिर बनी हुयी है जो कत्थे रंग की पोस्टर लगी हुयी है सफ़ेद रंग की ऊपर से तर गया है सफ़ेद नीला आसमान है पेड़ पौधे है हरी पट्टी है खम्बे गड़े हुए है।

यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है जो काले रंग की है पेड़ लगी हुई हरे रंग की पत्तियां है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो काले रंग का कपड़ा पहना और सफेद रंग की चड्डी पहने हुए है ।